हमें लाल गमले दिखाई दे रहे हैं।

एक बच्चे के हाथ में तिरंगे वाला झंडा है।

काफी सारे बादल नजर आ रहे हैं।

यहां काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं.

बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं एक जगह पर हमें घास नजर आ रही है।

और हमें यहां पर एक जे _सी_ बी दिखाई दे रही है।

आसमान में बहुत सारे बादल नजर आ रहे हैं।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहां एक गाड़ी खड़ी है।

एक आदमी ने लाल रंग का बैग टांगा हुआ है।

इस चित्र में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

एक गाड़ी खड़ी है जिस पर पीछे लाल लाइट जल रही है।

इस चित्र में हमें एक छत दिखाई दे रही है।

यहां दो टंकी रखी हैं जिनका रंग लाल और सफेद है।

इस चित्र में हमें एक बस दिखाई दे रही है।

फल की दुकान दिखाई दे रही है जहां संतरे सेब रखे हुए हैं।